और यहां पर एक डॉगी पड़ा हुआ है।

और इसमें ए_सी भी लगा हुआ है।

और यह दीवार है सफेद कलर की है।

यह एक गांव है इस गांव में एक आदमी साइकिल पे सड़क से जा रहा है।

यह एक स्टेज है इस स्टेज पर सिल्वर कलर का डिजाइन है।

इस बिल्डिंग के बाहर दो गाड़ी खड़ी हुई है।

और एक जेंट्स के सिर पर फूलों से बनी मालाएं भी रखी हुई है।

और यहां पर बहुत सारी कुर्सियां भी हैं।